यहां पर मुझे एक व्हाइट कलर का सोफा--

यहां मुझे दो बच्चे नजर आ रहे हैं यहां मुझे वे दो बच्चे एक पाइप के--

इसमें जले हुए हैं यहां मुझे कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

ओ हरे कलर के हैं।

यहां पर मुझे एक रोड नजर आ रही है।

यहां पर मुझे कुछ झाड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे उस दुकान के सामने एक कार खड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है।

यहां पर वे इंसान ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ खड़ा है यहां पर कुछ कॉपी किताब जमी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बे किसी गन से प्रेशर मार रहा है कार में--

यहां पर वे कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

जो ज बिछी हुईं हैं यहां पर मुझे ये बस की कुर्सियां नजर आ रहीं हैं।

यहां पर मुझे एक राहुल ऑटो एजेंसी --